जो दिखने में अच्छा भी लग रहा है यहाँ डोरियां भी दिख रही है बगल में बहुत अच्छा घर भी बना हुआ है जो देखने में अच्छा लग रहा है।